सामने बहोत सारी टेबल दिखाई दे रही है जिसके ऊपर मेहरून कलर का दरी बीछी हुई हैं।

यहाँ पे हर एक डाइनिंग टेबल पे एक -एक गुलदस्ता रखा हुआ है दो-दो गिलास रखे हुए है और यह लाइटो से सजा हुआ दिखाई दे रहा हैं।

सामने एक बड़ा सा रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत लंबी -लंबी डाइनिंग टेबल लगी हुई है।

और उनके आसपास काले कलर की डिजाइनिंग कुर्ती कुर्सी रखी हुई है और साथ ही कप रखे हुए हैं गिलास रखे हुए हैं सामने एक खुला मैदान दिखाई दे रहा है।

साइड में एक सायकल से फूड लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा हैं और सामने एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा हैं।

ऊपर टिन शेड दिखाई दे रहा है सामने एक बाल्टी रखी हुई है जो की हरे रंग की दिखाई दे रही है।

सामने बहुत बड़ा एक नदी दिखाई दे रही है इसके आसपास पत्थरों के पहाड़ बने हुए उन पहाड़ों पर हरी हरी घास लगी हुई है ऊपर खुला आसमान दिखाई दे रहा हैं।

साथ ही इस पानी में बहुत सारी कई जमी हुई दिखाई दे रही है साथ ही कुछ मिट्टी भी दिखाई दे रही।